यहाँ बहुत आदमी स्विमिंग करने नहाने के लिए आते हैं और यहाँ एक पिछलने वाला भी है।

इसे पिसल के सीधा स्विमिंग पूल में जाना बहुत मजा और मस्ती आ --

और यह पार्क में बहुत सारे उ उ जानवर भी रहते है। जैसे जिराफ ज़ेब्रा दरियाई घोड़ा जंगली बिल्ली के ऊपर यह सीन यहाँ बहुत आदमी इसे देखने के लिए भी आतें है और यहाँ बहुत हरियाली भी --

यहाँ बहुत लड़की योग कर रहे हैं पर बोहुत अच्छा बात है योग करना क्योंकि योग करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं।

यहाँ बहुत आदमी सुबह शाम कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं।

और यह नदी का पानी बहुत शुद्ध होता है।

और यहाँ होटल गेटवे ऑफ़ कर्नाटका है ।

कैनरा बैंक का फोटो दिखाया जा रहा है।